बहुत बड़ा दुकान है जो कि सारे सामान यहाँ पर मिलते है इस दुकान मे बहुत अच्छे-अच्छे सामान मिलते है बिस्किट पापड़ सब कुछ मिलता है इस दुकान में बढ़िया-बढ़िया

अब्रेला हवा सीढ़ी चढ़ने के लिए ऊपर से समन उतारने के लिए पंखा भी लगा हुआ है ।

यहाँ हम देख रहे हैं पारले जी बिस्कुट है | यहाँ --

यहाँ मिट्टी का बर्तन मिलता है यहाँ पर रखा हुआ मिट्टी का बर्तन बहुत चीज़ है कप है मोबाइल भी चार्जर यहाँ रखा हुआ है ढेर सारे चीज़ यहाँ पे रखा हुआ हैं काफी अच्छे लग रहे है देखने में।